सुटर दिख रही है ब्लैक कलर की पीछे एक तस्वीर बनी हुई है।

जो की योगा सिखा रही है मैम ।

जो की खंभे दिखाई दे रहें हैं खंभे कथे कलर के दिखाई दे रहें हैं इसमें हमको --

पर जिम कर सकते --

ब्लैक कलर के शूज है।

यह एक पहाड़ है यह पहाड़ बहुत अच्छा है।

उसमें तीन पहिए लगे हुए हैं।

सरफ भी रखा साबुन भी है।

सीढ़ी चान सीढ़ी पर टाइल्स लगी हुई है।

ये वाइट शर्ट पहन कर खड़ा हुआ है।

ये बनियान की शॉप है यहाँ प --

कुत्ता ब्लैक कलर का है कु --

ये एक हॉल है हाल में ही बहोत सारी ब्रेंच रखी हुई हैं।

बी मेमोरियल हॉस्पिटल का --

एक बकरी बैठी हुई है घांस में बहुत अच्छी घांस दिखाई दे रही है घांस --